मोबाइल है चप्पल है कुर्सी है ऐना है जाेकेट है।

आदमी है कपड़ा है घोड़ा है महिला है।

मिठाई है लड्डू है रसगुल्ला है जंगला हैं।

बॉल है बत्ती है करकट है।

पेन है कॉपी है किताब है बेड एं शर्ट है पेंट है।

मर्चाई प्याज है।

तार है बॉल है कुर्सी है।

चप्पल है जूता है जींस है पेड़ है घर है एटा है फुल है कंघी जुड़ा है।